और ये सब ज्यादा तर झींगे सफेद रंग के ही होते है और इन से कुछ बड़ी-बड़ी झींगे भी होती है जो कि ये भूरे रंग की होती है वो एक बहुत अच्छी --

--सामने एक बड़ा सा लाइट का खंबा लगा हुआ है जिस पे एक जन एक यहाँ पर रखा हुआ है जब अगल बगल मे बहुत से लोगों को देखा जा सक--

यहाँ पर एक सिधी रोड जाती हुई देखि जा सकती है इसके दोनों ओर बहुत सारे पेड़ देखे जा सकते है कुछ हरी-हरी घास लगी हुई है और कुछ गार्डन देखे जा रहे है ऊपर नीला आकाश दिखाई दे रहा--

--और यहाँ पे मोर डांस करने वाली भी है और सामने इसको नीले रंग नीला कलर दिखाई दे--

एक हरे रंग का एक पट्टी जैसी बाँधी गई है जिस से गाये खुल कर के जाए ना यह दूध भी देती होगी और अगल बगल मे कुछ मकाने दिखाई दे रही है कुछ दिवारे सफेद रंग से पेंट --

यह ज्यादा तर मछलिया मर चुकी है और यह ऐसी मछली है जिन को उत्तर प्रदेश मे नहीं खाया जाता।

--और कई लोगों को एक साथ जाते हुए देखा जा सकता है अगल बगल मे बहुत सारी हरी हरी पेड़ लगी हुई है और कुछ हरी हरी घासे भी लगी हुई है ऊपर नीला आकाश दिखाई दे रहे है।

यहाँ पर कोई शादी का फंक्शन वगेरा होने वाला है जिसे बहुत अच्छे तरीके से डेकोरैट किया गया है।

कुछ छोटी साइकिलों को तलमारी पे सजा कर के रखा गया हैं ऊपर लाइट जलती हुई साफ देखी जा सकती हैं दूसरी तरफ से कुछ लोग आते हुए--

एक बड़ी सी पहाड़ जैसी कुछ दिखाई दे रही है और सामने कुछ झील वगैरा भी देखा जा सकता है ये स्थान देखने मे बहुत खूबसूरत --

यहाँ पर कई लोगों को देखा जा सकता है जो की एक नदी के अंदर मे है और यहाँ पे नांव चलाते हुए देखे जा सकते है।